सामने एक मंडी दिखाई दे रही है जहां--

पार्क में रास्ता दिखाई दे रहा है और बहुत सारे--

यह एक मॉल है जहां कुछ गेम्स दिख रही हैं सामने काउंटर पर--

और गन्ने भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारा सामान रखा हुआ है।